जो बंदूक रखे हुए हैं साथ ही एक झंडा भी लगा हुआ हैं और आस पास मे हरि घास पुस् लगी हुई है।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

और यहां दो कुर्सी लगी हुई है जिसमे भी त्रिकोण आकार के शेप बने हुए है और यहां निचे हॉल मे टाइल्स लगी हुई है साथ ही ये घूमने वाली कुर--

यहां एक टीन सेट हॉल बना हुआ है यहां एक ठेली खड़ी है जिसपे जिसपे गैस सिलेंडर रखे हुए है और यहां एक स्वच्छ अभियान का एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

एक पेड़ लगा हुआ है आम का छोटा-सा और आसपास में घास लगी हुई है सामने दिवार पर व्हाइट कलर का कलर हुआ है।

यह गार्डन अति सुंदर है इसके ये बहुत बड़ी गार्डन है और इसके आसपास मे छोटी-छोटी दुभा लगी हुई है।

शॉट गार्डन है इसमें पेड़-पेड़ लगे हुए है आस-पास और कुछ दुबा लगी हुई है।

यह एक लेब है जिसमें मनुष्य के शरीर की हड्डियाँ रखी हुई हैं और इसके आस-पास दो बोर्ड लगे हुए हैं।